जावा में मेथड्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे
मेथड को बनाना
और मेथड को कॉल करना
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
उबंटु वर्जन 1110 जावा डेवलपमेंट किट 16 और इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स में साधारण जावा प्रोग्राम कैसे लिखें कंपाइल और रन करें
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँhttpwwwspoken tutorialओआरजी जावा मेथड स्टेटमेंट्स का संचय है जो निर्दिष्टित ऑपरेशन क्रियान्वित करता है
अब मेथड लिखें
अतः इक्लिप्स में मैंने पहले ही एक प्रोजेक्ट मेथड बनाया है
प्रोजेक्ट में मैंने मेथोडेमो नामक जावा क्लास बनाया है
क्लास में मेन मेथड के बाहर हम एक मेथड लिखेंगे
अतः टाइप करें वॉइड मेथड का नाम
नाम है डिस्प्लेमेसेज पेरेंथीसेस एंटर करें
और कर्ली ब्रैकेट्स
मेथड वैल्यू को रिटर्न कर सकता है
लेकिन यदि आप नहीं चाहते कि मेथड वैल्यू को रिटर्न करे तो कीवर्ड वॉइड उपयोगित है
ठीक है अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैसेज को प्रिंट करें
अतः टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो मेथोड
अतः हमने एक मेथड लिखा है
अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे
मैन मेथड में हम क्लास मेथोडेमो का एक ऑब्जेक्ट बनायेंगे
अतः मेथोडेमो ऑब्जेक्ट का नाम
इसे नाम दें मद new मेथोडेमो पेरेंथीसेस सेमीकोलों
अतः हमने न्यू ऑपरेटर का उपयोग करके क्लास मेथोडेमो का ऑब्जेक्ट मद बनाया है
अब डिस्प्लेमेसेज मेथड को कॉल करें
अतः टाइप करें मद डॉट डिस्प्लेमेसेज डॉट ऑपरेटर का उपयोग मेथड को कॉल करने के लिए किया जाता है
अब रुन आइकन पर क्लिक करके इस एप्लिकेशन को रन करें
हम कंसोल पर हेलो मेथोड आउटपुट देखते हैं
वॉइड के बजाय इंटिजर रिटर्न करें
अतः टाइप करें इंट
और मेथड पब्लिक बनाएँ जो कहीं भी ऐक्सेस होता है
डिफॉल्ट रूप से यह प्राइवेट हैजो केवल क्लास के अंदर ऐक्सेस होता है जहाँ यह लिखा हुआ है
अब मेथड में टाइप करें रिटर्न सेवेन सेमीकॉलन
याद रखें हम मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट सभी के अंत में लिखते हैं
क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई भी अन्य स्टेटमेंट्स निष्पादित नहीं होती हैं
अब मैन मेथड के अंत में टाइप करें प्रिंट स्टेटमेंट
अतः टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट println पैरेंथेसिस में हम मेथड को कॉल करेंगे
अतःparentheses में मद डॉट मेथड को रखें सेमीकॉलन को हटाएँ
यह मेथड की रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करेगा
एप्लिकेशन को रन करें
हम आउटपुट में देखते हैं वैल्यू 7 प्रिंट होती है
अब हम अन्य मेथड लिखेंगे और इस मेथड को डिस्प्लेमेसेज में कॉल करेंगे
अतः टाइप करें पब्लिक वॉइड मेथोड नामे स्क्वेयर पेरेंथीसेस में इंट आ
यहाँ हम अपने मेथड को पैरामीटर के रुप में इंट आ दे रहे हैं
अब कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेरेंथीसेस में आ इंटो आ
अतः हमने स्क्वेयर मेथड लिखा है
वह इंटिजर का स्क्वेर प्रदर्शित करेगा जो पैरामीटर में दिया गया है
इस मेथड को डिस्प्लेमेसेज मेथड में कॉल करें
अतः टाइप करें स्क्वेयर पेरेंथीसेस में एक इंटिजर5 सेमीकॉलन इस एप्लिकेशन को रन करें
हम देखते हैं कि आउटपुट 5 का वर्ग प्रदर्शित करता है जो 25 है
अब एप्लिकेशन के फ्लो को समझते हैं
मैन मेथड शुरूवाती बिन्दु है
मैन मेथड में हमने पहले डिस्प्लेमेसेज को कॉल किया है
अतः कंट्रोल डिस्प्लेमेसेज
पर जाता है
और डिस्प्लेमेसेज में सभी स्टेटमेंट निष्पादित होते हैं पहला प्रिंट स्टेटमेंट है
फिर यह स्क्वेयर मेथड पर मिलता है
अतः कंट्रोल स्क्वेर मेथड पर चला जाता है
स्क्वेर मेथड इंटिजर 5 लेता है और इंटिजर का वर्ग 25 वापस करता है
फिर कंट्रोल डिस्प्लेमेसेज पर वापस जाता है
और यह वैल्यू 7 वापस करता है
फिर कंट्रोल मैन फंक्शन पर वापस जाता है
चूँकि यहाँ निष्पादित होने के लिए कोई भी स्टेटमेंट बाकी नहीं है तो मैन मेथड में एप्लिकेशन बदलता है
ठीक है अब स्टैटिक के रुप में डिस्प्लेमेसेज बनाएँ
अतः पब्लिक के बाद स्टैटिक टाइप करें
हम देखते हैं कि हम स्टेटिक मेथड में नॉन स्टेटिक मेथड कॉल नहीं कर सकते हैं
अतः हम इस कॉल को कमेंट करेंगे
क्योंकि मैन एक स्टेटिक मेथड है तो हम इसके अंदर स्टैटिक डिस्प्लेमेसेज कॉल कर सकते हैं
अब स्टेटिक मेथड के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है
अतः हम यह ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कमेंट करेंगे
और हम मद
डिलीट करेंगे
एप्लिकेशन रन करें
हम आउटपुट देखते हैं हेलो मेथोड और 7
हम 25 नहीं देखते हैं क्योंकि हमने स्क्वेर मेथड के लिए कॉल को कमेंट किया है
हम अन्य क्लास से भी मेथड को कॉल कर सकते हैं
इसके लिए मैंने एक क्लास डेमो बनाया है
क्लास के अंदर मेथड बनाएँ
अतः टाइप करें पब्लिक वॉइड शो पेरेंथीसेस एंटर करें
कर्ली ब्रैकेट्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एएम फ्रॉम ओथर क्लास
फाइल सेव करें
मेथड मेथोडेमो क्लास पर वापस जाएँ
अब हम मेथोडेमो क्लास के अंदर इस शो मेथड को कॉल करेंगे
000928 000921 इसके लिए हमें क्लास डेमो का ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता है
क्योंकि शो मेथड क्लास डेमो
से संबंधित है
अतः टाइप करें डेमो dnew डेमो पेरेंथीसेस सेमीकॉलन
फिर शो मेथड कॉल करें
इस एप्लिकेशन को रन करें
हम कंसोल पर देखते हैं आई एएम फ्रॉम ओथर क्लास
इस तरह से जावा में मेथड्स का उपयोग करते हैं
मेथड नेम और पैरामीटर्स मेथड का सिग्नेचर बनाते हैं
जबकि कर्ली ब्रैकेट्स और स्टेटमेंट्स मेथड का ढाँचा बनाते हैं
अतः इस ट्यूटोलियल में हमनें सीखा मेथड बनाना
मेथड कॉल करना
और मेथड्स के भिन्न सिग्नेचर्स
स्वा मूल्यांकन के लिए एक मेथड बनाएँ जो एक इंटिजर के क्यूब को प्रिंट करे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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं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
धन्यवाद